एक और मेज पड़ा हुआ है जिसके ऊपर एक आकृति रखी हुई है।

बाहर पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ों की परछाई है नीला आसमान है।

इसकी जो पहली मंजिल है उसके ऊपर तीन खिड़कियां हैं इसमें एक लोहे का खंभा दिखाई दे रहा है जो छोटा है।

पानी के थोड़ा आगे चल कर जमीन दिखाई दे रही है।

दरवाजा पारदर्शी है और इस और कमरे में कुछ लोग दिखाई दे रहे--

एक तरफ बिजली के खंबे है बिजली की तारें दिखाई दे रही हैं।

पहली महिला जो सबसे आगे हैं उसने नीले रंग की चादर बिछाई हुई है।

दूसरी महिला ने गुलाबी रंग की चादर बिछाई हुई है जिसके ऊपर बैठकर वो व्यायाम कर रही है कमरे की दीवारें--

ये एक इमारत का दृश्य है जो एक मंजिला इमारत है।

इमारत के बाहर दुकानें है जिसकी शटर बंद है।

ये एक गिरजाघर की तस्वीर है। गिरजाघर के ऊपर अ ईसाई धर्म का प्रतीक चिन्ह लगाया हुआ है।

कुछ कटोरिया रखी हुई है कुछ मिट्टी के बर्तन हैं और एक लकड़ी बना हुआ डिब्बा है जो रोटी रखने के लिए है साथ में कुछ पत्ते पड़े हुए है।

ये एक इमारत की तस्वीर है इमारत के चार दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

कमरे के बीच में ए_सी दिखाई दे रहा है।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

अपने हाथ में सफेद रंग के दस्ताने पहने हुए हैं मेज के ऊपर एक कुत्ता लेटाया हुआ है।

यह एक धार्मिक स्थल का दृश्य दिखाया गया है कुछ मंदिरनुमा इमारतें बनी हुई हैं।

के नीचे बहोत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं जो कि कहीं जा रहे हैं बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक दीवार है जिस पर सफेद रंग की सफेदी की हुई है।

इसमें कुछ जे_सी_बी गाड़ियां खड़ी हुई है जे_सी_बी गाड़ियों का रंग पीला है।

दाई हाथ एक इमारत दिखाई दे रही है जिसके कोने पे एक दुकान नुमा कुछ बना हुआ है दुकान के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है।

इस तस्वीर में दो बस दिखाई दे रही है चार व्यक्ति मौजूद है।